और हमें यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है जोकि सफेद कलर की नजर आ रही है और हमें यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।